दो गुफे हैं नया और इ अ उस साइड भी है इसका बिल्डिंग है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत पुराने टाइप का है और देखने में बहुत ही ज्यादे अच्छे लग रहे हैं जो कि हॉल टाइप का है और इसमें बहुत सारे स्तंभ लगे हुए हैं।

मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे है देखने मे और ये बहुत ही ज्यादे उ-ऊंचे है और ये बहुत ही अच्छा डिजाइन दार बनाया गया है जो कि देखने मे काफी खूबसूरत लग रहा।

इ जो है एक पार्क है जो की बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने मे | यह गोल गोल टाइप का रोड बनाया हुआ है जो की इसमे फूल लगाया हुआ काफी कलर के--